मुझे एक प्ले ग्रुप दिख रहा है जिसका नाम मेरेको दिख रहा है शैमफोर्ड एंड एडमिशन ओपन का कुछ बैनर लगा हुआ है।

तीन चार विंडोस दिख रही है एक लाइटिंग का है ना वोोो एक थंबा सा दिख रहा है।

मुझे हाईवे की जैसे पार्किंग होती है वैसा पार्किंग दिख रही है जिसमें मैं चार फोर व्हीलर देख रही हूँ जिसमें से तीन फोर व्हीलर में से कार हैं और एक ट्रावेलिंग का कुछ है।

ये महात्मा गांधीजी है और ये न भारत का नक्शा है कुछ समथिंग ऐसा दिखाई दे रहा--

एयू होलसेल रिटेल समथिंग समथिंग लिखा हुआ है।

मुझे एक ये ग्रोसरीज स्टाइल में मिक्सचर स्टाइल में शॉप दिख रहा है जिसमें काफी कुछ वेफर्स काफी कुछ ए जैसे कि --

उस अंदर बिक्री करता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रोसरी शॉप लग रहा है ।

आई कांटेक्ट कर के मैं काउंटिंग कर सकती थी तो मैंने थर्टी टू काउंटिंग की है पर उससे भी अधिक हो सकते हैं ।

और कुछ कलरिंग उनके ऊपर डेकोरेशन में लाइनिंग में कुछ कलरिंग के पत्ते पत्ते लगाए हुए हैं ।

मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग दिखाई दे रहा है जिसमें काफी डेकोरेशन अच्छा किया हुआ है झूमर लैंप अच्छी लाइटिंग --

करने वाले कुछ इनवाइट किया हुआ मेहमान वगैरह मुझे दिखाई दे रहा है ।

स्टेशनरी काफी कुछ अंदर है जो ऐसा लग रहा है बिक्री के लिए र --

मुझे एक पुल दिखाई दे रहा है पुल के इर्द-गिर्द नदी स्टाइल में है सही पर वो क्लीन नहीं है बहुत --

और ब्रीज के नीचे जो स्टेन में पत्थरस लगाते हैं जो स्टेन करने में वो भी है ।

मुझे एक घर के अंदर का बेडरूम दिखाई दे रहा है जिसमें कर्टंस लगे हुए हैं दो चेयर एक टेबल और एक बेड ना बेड है ।

एक लाइट और नेवी ब्लू में ड्रेस अप किया हुआ है उनका यूनिफॉर्म लग रहा है और ग्रीनरीजस मैदान में वो खेल रहे हैं ।

काफी छोटी-छोटी पैकेट्स में जैसे कि जेम्स वगैरह वो सब दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा सामान दिखाई दे --

मुझे एक कंप्यूटर क्लास सीखता हुआ रूम या तो ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसमें वर्क करते हुए --

किचन में यूज की जाती है वो चीजें दिखाई दे रही है और वो अच्छे से अलग-अलग रोस बनी हुई है जिसमें वो रोस में वो सेटलमेंट की गई --

मुझे एक ऑन द वे वाला जैसे रोड दिखाई दे रहा है उसके बीचों-बीच --

एक बाइक एक टू व्हीलर ऐसे पड़ी है और उधर से एक ऑटो आती नजर आ रही है काफी कुछ चेंस अजंता डेहरी करके उधर --

मुझे कथक करती हुई चार लेडीस नजर आ रही है जो भरत नात्यम जैसे स्टाइल में पोज दिए हुए हैं जो --

उसके पीछे का सेट पूरा मेरेको ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्नाटका में जैसे का --

और एक तरफ काफी सैलून का अ अ ए ए ओ ना ए नो --

ओर्नामेंट्स पड़े हैं काफी कुछ ए_सी वगैरह ये सब भी पड़ा --

' मुझे एक ग्रैन है पुराना सा घर के बाहर अह पुराने फर्नीचर को न्यू करने कर के --

फर्नीचर बनाया जाने में दिखाई दे रहा है जिसको जो मुझे टेबल स्टाइल में हाफ एंड हाफ दिख रहा है ।

क्लॉथ है ना स्टोर लग रहा है जिसमें काफी क्यूट से बेबीज का बोर्न बेबीस से लेके --

सिक्स से सेवन इयर्स के बेबी तक का इधर अच्छा खासा शॉपिंग कोई कर सकता है ऐसा मार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें काफी कुछ फ्रॉ --

लेगीस वगैरह काफी कुछ जमसूट काफी कुछ दिखा --

और ऐसा लग रहा है कि कुछ आधा काम किया हुआ है मकान का और तीन चार बाइक्स दिख रही है ।

एक ब्लू कलर का ड ड्रम दिख रहा है एक टंकी ग्रीन कलर की दिख रही है। वाइट कलर का पूरा मकान को कलर किया हुआ है।

मुझे एक ये गैराज स्टाइल में पंजाबी वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ और अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ और --

फोटो इलेक्ट्रिकस वर्क्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है मुझे गैरेज दिख रहा है ।

मुझे यहाँ कोई बड़ा सा गेट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और उसके आजू-बाजू दीवाल वाइट और ग्रीन से ये अच्छे से पेंटिंग की हुई है ।

और पार्किंग और सीढ़ियों का रास्ता दिख रहा है और गेट बंद है ये देखिए ।

मुझे ये जैंट्स सैलून दिखाई दे रहा है जिसमें एक बंदा खुद की शेविंग करा रहा है और दूसरा बंदा वो --

शेविंग उसको कर के दे रहा है और दो बंदे वेटिंग रूम में है या हेल्पर है ऐसा दिखाई दे रहा है और सलून की काफी कुछ चीजें हैं मिरर --

ट्रोली वगैरह टी_वी ये सब सैलून में लगा हुआ दिखाई दे रहा है ।

ब्लैक कलर का स्पीकर नजर आ रहा है काफी नेचुरल नजारा है वो दिखाई दे रहा है ।

और ब्लैक कलर की कार है और वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ।

हैंग किए हुए हैं काफी कुछ ड्रेस अप यूनिक है ये सब मुझे दिख रहा है ग्रीन पिंक कलर में ड्रेस अप है कुर्तीस है लेगीस है प्लाजोस है ।

और दो बंदे बैठ के काम कर रहे हैं तीन चार लेडीज खड़े काम --

मुझे मुझे एक ज्वेलरी ये लिखा हुआ बैनर दिखाई दे रहा है एक लेडीज को ज्वेलरी पहने हुए बैनर पे है लेवेनी-- -

एक गाँव के अंदर कच्चे मटेरियल या तो मकान बनते हुए या तो बिल्डिंग का काम देखते हुए वो नजर आ रहा है ।

मुझे एक हार्डवेज का शॉप दिखाई दे रहा है जिसमें टॉयलेट्स काफी कमोट्स पड़े हैं काफी कमोट्स की पैटियां पड़ी है काफी टेप्स पड़े हैं काफी--

कलर से डेकोरेशन किया हुआ दुपट्टे और मटेरियल और फ्लावर्स को लेके डेकोरेशन किया हुआ है ।

मुझे एक पिक में श्रीराम मेगा मार्ट कर के फोटो में नाम दिखाई दे रहा है स्पीच एंड एम_एस मोहन लाल --